यहाँ पे देख पा रही हु की एक मार्किट है जो की मीट शॉप और यहाँ पे कुछ लोग खड़े है मीट लेने केलिए । और यहाँ पे मछलिया भी बिक रही और इस मार्किट में जो है वो --